वेराइटीस के फल है जहाँ सेब --

कुछ कर रहे है और वो सफ़ेद कपड़ा पहना हुआ एक फादर है जो यह चर्च हैं ।

और यहाँ लोग अपने मंदिर को आते है।

और यह दो कार खड़ी हुई हैं ।

है जो हरे रंग के है और घास भी हरे रंग की हैं ।

इस चित्र में हम देख सकते है कि यह एक बकरी का बच्चा हैं ।

और एक लाल रंग की है और ये रिक्सॆ पीले और काले रंग की है और एक बस --

और यहाँ कितने सारे आदमी लोग बैठ कर कुछ बात कर रहे है।

सिनेमा हॉल है जो इसकी स्क्रीन --

इस चित्र में आप देख सकते है की यहाँ एक दो घर है जो --

पेंस वगेरा- वगेरा सब मिलते है और जो इसका बोर्ड है वो लाल रंग का है और इसके--

इस चित्र में आप देख सकते है कि नीले रंग का आसमान हैं ।

घुस कर उस तरफ से निकलते है और यह पानी भी नीले रंग का हैं ।